ए फोटो के मान्य एक पोस्ट ऑफिस नजर आ रही हैं। पोस्ट ऑफिस का लाल-पीला रंग सा दिख रही दो-चार पट्टियां --

ये नाई की दुकान में को सजाया गया है जहां लाल और सफेद रंग को कंट्रास्ट बन रही दुकान में बनाए गया ज --

रोड साइड एक दो तीन मंजिला बने बिल्डिंग नजर आ रही है है कोई हॉस्पिटल जै --

ई फोटो के माइने एक पार्क नजर आ रही छे पार्क देखबा में खूब सुंदर लागे छे पार्क के अंदर एक आदमी अपना बच्चा ने --

यह फोटो को मैंने एक मैदान नजर आ रहा छे खूब सारे बच्चा मिलने बास्केटबॉल खेल रहा छे।